वो इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ दुकान छे जेकरा नाम संदीप इलेक्ट्रॉनिक हैइ बिल्डिंग में बैनर लगे छे बहुत कंपनी का जैसे ओनिडा होल टाटा स्काई होल।

और है गार्डन बाउंड्री वॉल करला छै और सबसे सुन्दर इहां एगो गुलाबी गुलाब के गाछ छै जेकरा में एगो गुलाबी गुलाब खिलले छै।

इ एगो क्लास छे जहाँ पे एगो मास्टर लाल टीशर्ट और उजला फुल पेंट पहनी के पढ़ा रहल छे।

ई एगो मंदिर का फोटो छे है यहाँ खूब सुंदर आसमान लग रहल छे आसमान मा दु कलर के बादल छे।

साइड में गणेश भगवान की मूर्ति छै हेकर गेट लाल कलर में छै।

ए.सी. सभी लागलो छै यहाँ दो तीनगो एगो आदमी छै जो दीवाल के कोना में खड़ा छै और बहुत सारा आदमी एकरौ बरामदा पे खड़े --